इस चित्र में हमें यहां पर लॉन का चित्र दिखाई दे रहा है।

यहां हमें गेट दिखाई दे रहा है एक फोर व्हीलर रखी हुई है।

इसके ऊपर इंफिनिटी इंटरप्राइजेज सेल एंड सर्विस --

इस फोटो में हमें यहां पर एक कपड़े की दुकान दिखाई दे रही है।

यहां नजारा काफी सुंदर दिखाई दे रहा है।